आते जाते हुए वाहन दिखाये गए हैं।

येलो कलर के दो गुब्बारे --

बिहार लोक सेवा का अदिकार अधिनियम एक बड़ा-सा चार्ट लगा है।

जोकेट पैंट शूज पेहेने हुए दिखाया गया है।

इस इमेज में एक साथ बहोत सारे श्रद्घालु --